सामने चेयर रखी है ब्लैक कलर की।

सामने एक बड़ा सा स्पीकर रखा है कार्टून रखा है।

सामने एक लड़का खड़ा है स्कूल बैग टांग कर।

यहा पर सामने तीन मिट्टी के बड़े बड़े दीपक रखे हैं।

साइड में भी एक शॉप है उसपे भी दो तीन जेंटस खड़े हैं।

यहां पर सामने ब्लू कलर का शटर लगा हुआ हैं।

यहां पर नीचे बहोत सारे छोटे बड़े टेंट लगे हुए हैं।

इधर साइड से गौशाला है एक गाड़ी खड़ी--

सामने व्हाइट कलर की जालियां लगी है जिसमें छोटे छोटे बल्ब लगे हैं।

यहां पर दीवार येलो कलर की पेंट की हुई है।

प बॉक्स रखा है रेड कलर का डस्टबिन रखा है।

इस पर तो कार चल रही है। बहोत सारे ऑटो चल रहे हैं।

यहां पर चार पांच जेंट्स खडे है।

यहां बहुत बड़ा चद्दर का शेड बना हुआ है।

एक जेंट्स खड़ा है जिसके हाथ में ब्लैक कलर का पाइप है।

क्या सामने व्हाइट कलर के पेंट करे हुए मकान बने हुए हैं।

एक लड़की खड़ी है जिसने ग्रीन कलर के--

एक जेंट्स खड़ा है जिसने ब्लू कलर का टी-शर्ट पहन रखा है।

यहां पर अंदर कुछ मकाने बने है। कुछ फैक्ट्रिया हैं।